dwsim में heat exchanger को सिमुलेट करने पर इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे: heat exchanger को simulate करना
outlet stream temperatures की गणना करना
thermal efficiency और lmtd की गणना करना
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ dwsim 43 और windows 7
इस tutorial में प्रदर्शित प्रक्रिया अन्य os जैसे linux mac os x या arm पर fossee os में भी समान है
इस tutorial के अभ्यास के लिए आपको flowsheet पर components को जोड़ने का ज्ञान होना चाहिए
thermodynamic packages चुनें
material stream जोड़ें और उनकी विशेषताओं का उल्लेख करें
पूर्वापेक्षित tutorials हमारी website पर उल्लिखित हैं
आप इन tutorials को और सभी सम्बंधित files को इस site से access कर सकते हैं
हम outlet stream temperatures को निर्धारित करने के लिए एक flowsheet विकसित करेंगे
यहाँ हम compounds और inlet stream conditions देते हैं
यहाँ हम heat exchanger properties और property package देते हैं
मैंने अपनी machine पर dwsim पहले से ही खोल लिया है
file menu पर जाएँ और new steadystate simulation चुनें
simulation configuration wizard window आती है
नीचे next button पर click करें
tab compounds search टैब में type करें methanol
chemsep database से methanol चुनें
उसी तरह water जोड़ें
नीचे next button पर click करें
अब property packages आता है
available property packages से raoults law पर double click करें
फिर next button पर click करें
हम flash algorithm named नयी window पर we जाए जाते हैं
default flash algorithm से nested loops vle चुनें
next button पर click करें
अगला विकल्प system of units है
system of units में c5 चुनें
नीचे finish button पर click करें
अब बेहतर द्रश्यता के लिए simulation window को maximize करें
अब दो material stream insert करते हैं जो heat exchanger प्रविष्ट करते हैं
main simulation window के दायें हाथ की ओर flowsheet objects पर जाएँ
filter list टैब में type करें material stream
प्रदर्शित सूची से flowsheet पर material stream को drag और drop करें
material stream mstr000 पर click करें और इसकी विशेषताएं देखें
इस stream का name बदलकर water in करें
अब हम water in stream विशेषताओं का उल्लेख करेंगे
input data पर जाएँ
यदि पहले से चयनित नहीं है तो flash spec में temperature and pressure tp चुनें
default रूप से flash spec में temperature and pressure पहले से ही चयनित है
temperature को 10 degc करें और enter दबाएँ
pressure को 1 bar करें और enter दबाएँ
mass flow को 15000 kg per hour करें और enter दबाएँ
अब हम feed stream compositions का उल्लेख करते हैं
यदि पहले से चनित न हो तो composition में basis को mole fractions चुनें
default रूप से basis में mole fractions ही चयनित है
methanol के लिए amount में 0 प्रविष्ट करें और enter दबाएँ
उसी प्रकार water के लिए 1 प्रविष्ट करें और enter दबाएँ
दायीं तरफ accept changes के लिए इस हरे tick पर click करें
अब flowsheet पर एक अन्य material stream को drag और drop करते हैं
material stream mstr001 पर click करें और इसकी विशेषताएं देखें
इस stream का name बदलकर methanol in करें
अब हम methanol in stream विशेषताओं का उल्लेख करेंगे
input data पर जाएँ
flash spec में temperature and pressure tp चुनें
डिफ़ॉल्ट रूप से flash spec में temperature and pressure पहले से ही चयनित है
temperature को 80 degc करें और एंटर दबाएँ
pressure को 5 bar करें और enter दबाएँ
mass flow को 25000 kg/h करें और enter दबाएँ
अब हम methanol in stream कम्पोज़ीशन्स का उल्लेख करते हैं
composition में basis में mole fractions चुनें यदि पहले से चयनित न हो
methanol के लिए amount में 1 प्रविष्ट करें और enter दबाएँ
उसीप्रकार water के लिए इसे 0 प्रविष्ट करें और enter दबाएँ
दायीं तरफ accept changes के लिए इस हरे tick पर click करें
अब दो अन्य material streams insert करते हैं जो heat exchanger को exit करें
वह करने के लिए हम एक material stream को drag करते हैं
अब इसे समायोजित करें
उस stream को अनिर्दिष्ट की तरह छोड़ दें
हम इस stream का name बदलकर water out करेंगे
आगे हम एक अन्य material stream insert करेंगे
इसे एक बार फिर समायोजित करें
उस stream को अनिर्दिष्ट की तरह छोड़ दें
और इस stream को methanol out name दें
अब एक heat exchanger को flowsheet में insert करें
flowsheet objects पर जाएँ
filter list टैब में type करें heat exchanger
प्रदर्शित heat exchanger पर click करें
इसे flowsheet पर drag और drop करें
बेहतर द्रश्यता के लिए इसे आवश्यकतानुसार समायोजित करें
हम अब heat exchanger को उल्लिखित करने के लिए तैयार हैं इस पर click करें
बायीं तरफ हम property editor window नामक एक टैब देख सकते हैं
connections में inlet stream 1 के सामने वाले dropdown पर click करें
आगे outlet stream 1 के सामने वाले dropdown पर click करें और methanol out चुनें
फिर inlet stream 2 के सामने वाले dropdown पर click करें
फिर outlet stream 2 के सामने वाले dropdown पर click करें
अब अगले sectioncalculation parameters पर आते हैं
यहाँ पहला विकल्प calculation type है
calculation type के सामने वाले dropdown पर click करें
outlet temperatures चुनें
आगे flow direction के सामने वाले dropdown पर click करें
फिर cold fluid pressure drop के सामने वाले क्षेत्र पर click करें और 0002 bar प्रविष्ट करें
hot fluid pressure drop के सामने वाले क्षेत्र पर click करें और इसे 0025 bar प्रविष्ट करें
फिर enter दबाएँ
overall heat transfer coefficient के सामने वाले क्षेत्र पर click करें और इसे 450 watt meter sqaure kelvin प्रविष्ट करें
heat exchange area के सामने वाले क्षेत्र पर click करें और इसे 250 meter square प्रविष्ट करें
अब हम simulation को now करते हैं
अतः toolbar से solve flowsheet button पर click करें
जब गणनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो flowsheet में heat exchanger पर click करें
heat exchanger के property editor window से results section पर जाएँ
thermal efficiency check करें यह 945% है log mean temperature difference check करें यह 1029 degree centigrade है
अब हम streamवाइज़ temperature परिणामों और material balance check करेंगे
insert menu पर जाएँ और master property table चुनें
master property table को edit करने के लिए इस पर double click करें
configure master property table window खुलती है
name में heat exchanger – stream wise results प्रविष्ट करें
object type में material stream प्रविष्ट करें default रूप से material stream पहले से ही चयनित है
अतः हम इसे नहीं बदलेंगे
properties to display में object में: water in methanol in water out methanol out चुनें
property में सभी parameters को देखने के लिए नीचे जाएँ
अब properties में निम्न चुनें:
molar fraction mixture/methanol
molar fraction mixture/water
window बंद करें
बेहतर द्रश्यता के लिए master property table को move करें
यहाँ हम inlet और outlet streams के लिए सम्बंधित परिणाम देख सकते हैं
अब हम heat exchanger की विशेषताओं को check करेंगे
insert menu पर जाएँ और master property table चुनें
master property table पर double click करें
configure master property table window खुलती है
name में heat exchanger – results प्रविष्ट करें
object type में heat exchanger प्रविष्ट करें
properties to display में object में he004 चुनें
property में सभी parameters को देखने के लिए नीचे जाएँ
अब properties में निम्न चुनें: global heat transfer coefficient u
heat exchange area a
cold fluid outlet temperature
logarithmic mean temperature difference lmtd और
इस window को बंद करें
बेहतर द्रश्यता के लिए master property table को move करें
यहाँ हम heat exchanger के लिए सम्बंधित परिणामों को देख सकते हैं
इसे सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने heat exchanger को simulate करना
outlet stream temperatures की गणना करना
thermal efficiency lmtd की गणना करना
नियत कार्य में भिन्नभिन्न compounds feed conditions और thermodynamics के लिए इस simulation को दोहराएँ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
spoken tutorial project team कार्यशालाएं आयोजित करती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें
इस forum पर अपने समयबद्ध प्रश्न post करें
fossee team dwsim में मौजूदा flow शीट्स के कन्वर्शन का संयोजन करती है
हम मानदेय और प्रमाणपत्र details हैं अधिक जानकारी के लिए कृपया इस site पर जाएँ
fossee team प्रसिद्ध किताबों के सुलझे हुए उदाहरणों की coding से संयोजन करती है
हम मानदेय और प्रमाणपत्र details हैं अधिक जानकारी के लिए कृपया इस site पर जाएँ
fossee team commercial simulator labs को dwsim पर स्थानांतरित करने में मदद करती है
हम मानदेय और प्रमाणपत्र details हैं अधिक जानकारी के लिए कृपया इस site पर जाएँ
spoken tutorial और fossee projects भारत सरकार के mhrd के nmeict द्वारा निधिबद्ध हैं
यह स्क्रिप्ट श्रुति आर्य द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं जया आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद